कर भी खड़ी है और बहुत सारी गाड़ियां और भी खड़ी है।

यहां पर बहुत बड़ा जाल टाइप का बना हुआ है जो कि काले और हरे रंग का है।

धूप तो यहां पर बहुत कड़कती हुई है और कुछ जगह छाए भी हैं।

वह यहां पे इसलिए खड़ा है क्योंकि यहां पे बोहोत सारी घास और पेड़ पौधे उगे हुए हैं।

उसके ऊपर एक साइड एच_डी_एफ_सी का म्युचुअल फंड है।

इन पेड़ों की गिनती करना बिल्कुल भी आसान नहीं है।

और वो है लाल और पीले रंग के तो कुछ है नीले और पीले रंग के।

इसपे बैलून से सजावट हो रखी है जो की लाल नीले और सफेद रंग के हैं।

चित्र में एक पीले रंग की बिल्डिंग है जिस पर एक साइड लिखा है आंध्र बैंक ए_टी_एम ।

वहां पर बहोत सारी बाइके खड़ी हुई है और एक आदमी खड़ा है जो सफेद रंग की शर्ट पहना है।

इसके सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे उगे हुए हैं।

वहां पे अंदर नीले रंग की बोर्ड पर लिखा हुआ है बिल पेमेंट्स इंटरनेट बैंकिंग --

जिसका रंग है लाल और भूरे रंग का उसके ऊपर लिखा है नेस्कैफे ।

उसका बोनट भी खुला हुआ है और उसके सारे टायर भी निकले हुए हैं।

गुब्बारों से सजावट हो रखी है जो की लाल और सफेद रंग के हैं।

उसके ऊपर नीले रंग से डिजाइन बनी है और सफेद रंग से लिखा हुआ है एच_डी_एफ_सी बैंक ।

और यहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

उसपे एक औरत और आदमी सूरज के आस पास हाथ करके अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं।

और कुछ समान इधर रखा है जो कि काले डिब्बे है और कुछ समान उधर रखा है जो कि नीले डिब्बे है।

और इधर साइड में घास उगी है जो की भूरे रंग की है।

वहाँ पर बोहोत सारी काली-काली खुर्सियां भी पड़ी हुई हैं और एक भूरी मेज भी पड़ी है।